और इसके आगे पेड़ हूँ भी दिखाई दे रहे है। एक ऑटो भी जो है वो खड़ा हुआ है येल्लो येल्लो कलर का दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे एक स्टेज जैसा बना हुआ है । स्टेज पे पहाड़ जैसा कुछ बना हुआ है । जिस पे बहुत सारी मूर्ति वगेरा जो है रखी हुई हैं ।

यहाँ पे काफी बड़ी एक दूकान जैसी दिखाई दे रही है जिसका गेट जो है काँच काँच का बना हुआ है और उसपे एक गेट लगा हुआ है ।

पूरी अलग-अलग कलर के फूल्स वगैरा दिखाई दे रहे है। यहाँ पे ये टेंट है जो की काफी बड़ा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक लड़का दिखाई दे रहा है।